अ मशीन है जोकी काफी अच्छी है सिल्वर कलर की है जो की काफी सारी मशीन है और वाइट कलर --

एक पोस्ट ऑफिस का ऑफिस हैं जो की काफी बड़ा हैं काफी अच्छा हैं बाहर बैठने की वो भी बना हुआ है पट्टी काफी अच्छी हैं। कत्ती --

ये पोस्ट ऑफिस का ऑफिस हैं जो की काफी बड़ा है काफी अच्छा हैं ब्लैक कलर का उसका गेट हैं चैनल गेट जो की एक गाड़ी रखी हैं रेड और वाइट मे हैं काफी अच्छा लग रहा हैं बाहर से जो पेंट हैं।